अगे आइटम हवे जे में दाल बा भात बा।

और कुछ उजाला पट्टी भी मारल उजला --

इ मच्छली हवे छोटा मच्छली बा जोन मर चुकल बा।

एमे बहुत ही तरीके के लोग जारय पूजा करे मन्नत मागे और बहुत चीज करे |

डी ऊपर से पहनावल बा | एगो ऑरेंज बंडी बा एगो नीला बंडी बा |

जो जो चर्च में रहेला और क्रिस्चियन लोग क्रिस्टियन लोग की भगवान है।